कुछ पेड़ पौधे और एक भवन उसके दरवाजे और खिड़किया भी दिख रहे है दरवाजे और खिड़किया नीले कलर से रंगे हुए है जबकी भवन की दीवारे सफेद कलर से रंगी है।

पीछे दो अन्य मूर्तियाँ भी दिख रही है छत पर कुछ लाइटे लगी हुई है दीवारे सफेद रंग से रंगी हुई है और कुछ खिड़कियाँ भी नजर आ रही है।

इस फोटो मे हमे कुछ व्यक्ति पेड़-पौधे फर्स और बिजली के खंबे दिखाई दे रहे है कुछ लाइट भी दिखाई दे रहे है।